यह एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के चारो साईड में शीशा लगा हुआ है और इसके अन्दर में ऑफिस लेवल पे काम होता है तो तीन व्यक्ति देख सकते है जो की बाहर की ओर जा रहा हैं और एक व्यक्ति --

होली का सीजन चल रहा है। होली में ऐ कलर लगाया हुआ है और माथे पे टिका लिया हुआ है और यह कोई अस्थान पे घूमने के लिए गए है और इसके हाथ में एक पानी का बोतल है और पीछे भी कोई मंदिर लग रहा है।

मेला के मेला में एक बहोत बड़ा झूला लगा हुआ है और झूले में बच्चे पुरुष आदमी सब यहाँ झूलने में पसंद किया जाता है झूले को और अपना पैसा खर्च करके झूले में चढ़ते हैं ।